ये एक क्लब बना हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

भरा हुआ है जिसको देखने के लिए किनारे पे लोग खड़े हुए हैं।

जो की बस्सी डिपो इस पे लिख रखा है और इसमें चढ़ने के लिए लोग खड़े हुए हैं।

और बस में चढ़ने के लिए तैयार हैं।

और जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है दो औरतें खड़ी है तीन आदमी खड़े हुए हैं पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए हैं।

ये एक घर है इसमें दो लोग खड़े हुए हैं पीछे ऊपर दुकान बनी है बाहर कुर्सी रखी हुई है साइड में गमले रखे हुए हैं।

ये एक फूल की दुकान है अलग अलग प्रकार के फूल रखे हुए हैं गमले लगे हुए हैं गमलों में प्लास्टिक के --